और इसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है।

इसके ऊपर पोर्टिको भी लिखा हुआ है।

यह एक हेयर सैलून है इसके अंदर दो कुर्सियां दिखाई दे रही है।

और बराबर में बहुत सारे शीशों से लगे हुए हैं और शटर भी लगे हुए हैं।

और एक पोस्टर भी लग रहा है।

जो कि पीकर बोला जाता है और एक ए_सी और पंखा और लाइट लगी हुई है।

यहां पर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर दिख रहे हैं और इसके अंदर तीन गेट बने हुए हैं।

और इसमें एक बेड भी पड़ा हुआ है।

और इसके बराबर में एक ड्रेसिंग है।

और कुछ व्यक्ति प्लेट भी लिए रखी है हाथ में जो कि इसके ऊपर लाइट और झूमर भी लग रहे हैं और एक ए_सी भी लग--